मुझे इस चित्र मे एक सड़क नज़र आ रही है सड़क के दोनों तरफ--

डेस्क लगी है उस डेस्क के नीचे कुर्सियाँ लगी हैं उन डेस्क पर लैपटॉप पड़े हैं।

तबदिल किया गया है उसके रवन पर लिखा हुआ है।

वह जे_सी_बी एक ट्रॉले को खींच रही है उस ट्रॉले पर--

एक बहोत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है उस दरवाजे पर लिखा है कैलाश धाम--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

मुझे इस चित्र में एक मकान नजर आ रहा है।

वह अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है।

मुझे इस चित्र में एक पुराना--

मार्ट नजर आ रहा है उस मार्ट में--